स्टेज पर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं। स्टेज के सामने बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं। कुर्सियों का रंग सफेद --

डॉक्टर के चश्मा लगा हुआ है। मास्क पहना हुआ है और हाथ में ग्लव्स पहना हु --

यहाँ पर एक तलब बना हुआ है तलाब के उपर एक ब्रिज बना हुआ है।

और बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं एक ठेला खड़ा हुआ है।